यहां पर ऊपर में फैन चल रहा है।

तालाब चारों तरफ से जंगलों से घिरी हुई है।

यह एक रास्ता है रास्ते के बगल में एक घर है।

ये एक बहुत सुंदर बीच है बीच के किनारे बहुत सुंदर ब्लू कलर का नदी है।

वो बच्चा एक ब्राउन कलर की चेयर पे बैठा हुआ है।

अंदर में एक बोलेरो गाड़ी है जो पार्क है।

घर के सामने एक गाड़ी है टाटा और दो बाइक पार्क है।

बाहर में कुछ फूल लगाए गए हैं रेड कलर के और इसके अंदर घुसने के टाइम बंबू से बनाए गए है।

वाल्स वायलेट कलर से पेंट की गई है और ऊपर ग्रीन कलर से।

यह एक ऑफिस है ऑफिस का नाम ऑफिस ऑफ द एग्जिक्यूटिव इंजीनियर वाटर रिसोर्सेज डिविजन रोइंग है ये रोइंग में स्थित है।